इस फोटो में मुझे एक काली कार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक मेडिकल दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे शोभा मेडिकल एजेंसी का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है।